यहाँ पर मुझे एक घर बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारे इंसान खड़े हुए दिखाई दे रहे है कुछ--

मुझे यहाँ पर विजय पुस्तक भंडार दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी फोटो लगी हुई दिखाई दे रही है कुछ इंसान खरीदते हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर बहोत सारे पोस्टर लगे दिखाई दे रहे है कुछ --

कटिंग भी दिखाई दे रही है बहुत सारी लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही है एक फोन पे भी टंगा हुआ दिखाई दे रहा है और तीन सेट लगा हुआ दिखाई--

यहाँ पर मुझे एक सैलून खुला हुआ दिखाई दे रहा है उसके अंदर एक इंसान बैठा तस्वीर खींचते हुए दिखाई दे रहा है एक इंसान कटिंग करते हुए मशीन हाथ मे लिए दिखाई दे रहा है।

बहोत सारी लाइटे लगी हुई दिखाई दे रही है इसके अंदर पंखे लगे दिखाई दे रहे है बहुत सारी खुरसिया व बॉक्स रखे दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर एक--